राइट मे एक ब्लैक कलर का पहना है।

अगल बगल में पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे पेड़ हैं।

ये फीके पिंक कलर में है इसका गेट रेड कलर का है ।

इस्कूल के आगे एक बिजली का खंभा है।

पटरी दिखाई दे रही है।

मिक्सी वगैरा रखा हुआ है आयरन रखा है।

बीच में एक फोटो लगा हुआ है।

बहुत बड़े बड़े पत्थल है पीछे बहुत बड़ा पहाड़ है।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

इस फोटो में एक व्यक्ति और एक बच्चा दिखाई दे रहा है।

पानी का बहाव ज्यादा है।

नीचे में तलाब बना हुआ है।

पीछे येलो और ग्रीन और व्हाइट से डेकोरेट किया गया है।

इस फोटो में बहोत सारे मोबाइल फोन के कभर दिखाई दे रहे हैं जो की बहुत रंग-बिरंगी और नए डिजाइन के हैं।

इस फोटो मे बहुत बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

इसके अगल बगल में छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं।

मूर्ति के ऊपर एक छतरी लगा हुआ है।